यह किसी हॉपिटल का ऑपरेशन थिएटर लग रहा है जहां पर ऑपरेशन किया जाता है।

एक चद्दर भी रखा हुआ है जो हरे कलर का इधर काले कलर की सीट भी रखी हुई है।

इस तस्वीर में एक शॉप का पोस्टर दिख रहा है जिस पर लिखा है जैन फूड सब्जी वाला।

यहां पर फूड मिलते है खाने पीने के सामान जो पूरा वेज का है।

पीछे ग्राहक का बैठने का जगह है जो की तकिए से रखा हुआ है और कुछ पीले कलर के हैं।

और पीले कलर के टायर और काले कलर लाइनिंग के टेबल भी रखे हुए हैं एक माजा का बॉटल भी रखा हुआ है और --

हाल काफी लाइटे लगी हुई जल रही है ऊपर छत भी हल्के पीले के ऊपर नीचे जो टाईले हैं वह लड़कियों के कलर का है।

इस तस्वीर में किसी बिजली घर का जगह लग रहा है जहां पर काफी बिजलियों के तार हैं।

पेड़ भी लगा हुआ है पीछे भी काफी पेड़ होते हैं दो टावर भी लगे हैं लाइटें के और नीचे दीवारें लाल और सफेद कलर की है।

दीवार पर काफी पेटीएम के क्यू_आर कोड और भी काफी पोस्टर और एक पोस्टर लाल कलर का दिख रहा है।

रूम का कलर पीले कलर का और नीचे हल्के लाल कलर का है नीचे टाइल भी लगी हुई है जो सफेद और काले पट्टियों से बनी है सामने स्टूल है जो चॉकलेटी कलर का है।

यहां एक चर्च के लोगों का जगह है जहां पर कुछ लोग चर्च की चीज पकड़े नजर आ रहे हैं सामने एक फादर और एक आदमी खड़ा हुआ जिसका चेहरा ब्लर है।

सामने दो व्यक्ति एक्टिवा ले कर जाते दिख रहे हैं दुकान के बाहर गाड़ियां खड़ी हुई हैं।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

ऊपर हाईवे है ब्रिज के ऊपर और काफी हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है।

सामने पीले कलर का एक घर बना है जहाँ पर लोग पानी पीते हैं सामने एक टॉयलेट का भी बना हुआ है।

ऊपर काफी पेड़ पौधे दिख रहे हैं खजूर का नारियल का पेड़ भी दिख रहा है नीचे केले का पेड़ भी दिख रहा है।

यह एक मान सेवर स्टेशनरी नामक शॉप है यहां पर काफी कॉपी और किताबें मिलती हैं।

व्यक्ति सफेद कलर का टी शर्ट पहने खड़ा हुआ है और अपने ए_टी_एम को देख रहा है बगल में ही दो तीन पोस्टर लगे हुए हैं जो की लाल और नीले कलर में दिख रहे हैं।

ऊपर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का भी पोस्टर लगा हुआ है जो कि अच्छे कलर में दिख रहा है दीवारे सफेद कलर की हैं।

कैफे के अंदर काफी बैलून लगे हुए जो गोल्डन सफेद और काले कलर के हैं लाइटे अच्छी सी लगाई गई है स्टूल और मेज भी रखे गए हैं अच्छे कलर के।

इस तस्वीर में सूअर के काफी बच्चे नजर आ रहे हैं जो हल्के गुलाबी कलर के हैं और यह सोते हुए दिख रहे हैं।

यह दुकान जो है सफेद कलर का है और बु गेट जो है नीले कलर का दिखाई दे रहा --

यह एक आदित्य नामक कॉलेज है जिसमें एम_एस_सी और बी_एस_सी और आई_आई_टी करवाए जाते हैं।

तस्वीर में पीले कलर का जे_सी_बी दिख रहा है जो की खोदने के काम आता है।

घर दिखाई दे रहे है जो कि दीवार दिख रही है और कुछ पीछे जेसीबी के बगल में एक ऑरेंज कलर की दीवार दिख रही है।

बाहर मैदान है जो की हरे भरे पौधों से भरा हुआ है अंदर बाउंड्री काफी भरी लग रही है।

हॉल काफी बड़ा है जो की सफेद और हल्के पीले कलर में नजर आ रहा है नीचे टाइले लगी हुई है जो सफेद कलर की है।